ये तो विशाखा डेरी पार्लर है और विशाखा डेरी पार्लर है ये और क्रीम --

और काफी सारे साउंड वगैरा डी_जे वगैरा रखे हुए है पीछे बंदे भी दिख रहे है।

अह ये तो एक पुरानी बिल्डिंग टाइप की लग रही है गवर्नमेंट टाइप की जो बीच--

सामने पूरा खाली ग्राउंड बना हुआ हैं।

पेड़ पौधे वगैरह सब टंगे हुए हैं रोड की पिक्चर दिख रही मेरे को ये।

और काफी शाइनिंग भी लग रही है देख--

और कंपटीशन वेगेरा भी चल रहा है।

ये पंजाब कॉन्करेंट ब्लॉक का बोर्ड लग रहा है जो भगवानपुर में है।

नीचे शॉप वगेरा भी मुझे लग रहा कि बंद ही है इन्होंने अपनी ऐड कर रखी है मोबाइल --

मॉर्निंग या इवनिंग की पिक्चर है ये।

यह किसी टाईल वगैराह की शॉप लग रही है मेरे को देखने में जो--

इसकी याड करने के लिए सामने बीच में ही उन्होंने रखा हुआ है।

सफाई का भी काफी ध्यान रखा हुआ है यहां पे--

बारिश का भी मौसम लग रहा है देखने में मिट्टी वगैरह भी दिख रही है शाम--

सामने मतलब शॉप वगैरा शोरूम टाइप का बना हुआ है जहां पे लोग इंतजार कर रहे हैं अपने बरि का--

ये किसी मैरिज फंक्शन की फोटो है। जहां पे किसी की मैरिज वगैरा या--

जहां पर बच्चे अपना पेंटिंग वगैरह डिजाइनिंग वगैरह कर रहे हैं। तीन से चार फोटो है। बच्चे काफी एंजॉय कर रहे हैं।

कार स्टोर रूम की फोटो है जहां पे लाइट में काफी अच्छी है बिल्डिंग वगैरह बनी हुई है।

बंदे भी तीन से चार लोग सामने सामने खड़े हुए है।

इतने में भी मतलब काफी अच्छी लग रही है देखने में भी काफी अच्छी लग रही है।

ऊपर से नीचे पूरा रोशनी का सारा ध्यान रखा गया है।

सामने एक पेड़ है पेड़ के बगल में एक खंभा भी है इसपे तारे बराबर--

सॉल्यूशन टू पॉल्यूशन इंडियन ऑयल की वीडियो है ये पेट्रोल पंप की सुविधा है यहां पे--

पेड़ पौधे भी अअ लगभग सारे अअ बने हुए हैं।